और साइड में बहुत सारे कुर्सियां लगे हुए हैं जो कि जिम करने के लिए है।

बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बरवा डीह लिखा हुआ है साइड में एक ठो साइकिल रखा हुआ है और सामने में काउंटर टेबल लगा हुआ है।

और नीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं।

यहां पे मार्शल आर्ट या कुंग फू कराटे सिखाया जा रहा है और उसके पीछे में भी बहुत सारे हरे हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

अर्स नीचे में टाइल्स लगे हुए हैं वो भी व्हाइट कल--

अ नीचे मे टाइल्स लगा है जो की ब्लैक कलर का है और दीवार में व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

बना हुआ है जिसके ऊपर में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं और बोर्ड बना हुआ है जिसमें कि कुछ का वायर लगा हुआ है।

और बहुत ही बड़ा स्कूल लग रहा है और गेट लगा हुआ है।

इस झरने में बहोत ही शानदार तरीके से पानी गिर रहे है जो की बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही सारा ग्रीन ग्रीन पेड़ है।

और साइड में जूता शॉप है जो कि जूता का पोस्टर लगा हुआ है ऊपर में और वो खुला है।

पीछे मे एक साल है और तीन आदमी है।

पीछे में समुद्र है जोकि बहुत ही बड़ा है उसमें पानी रहा है।

तस्वीर में दो ठो चिमनी खड़ा है और नीचे में कीचड़ बना हुआ है जो कि पानी भरा हुआ है गड्ढे--